कई पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यह एक मंदिर के जैसा दिखाई दे--

मुझे यहां फूल दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां एक व्यक्ति दिख रहा है।

जिसमें बहुत सी मछलियां रखी हुई हैं।